दो बच्चे है जो यहाँ पर अअअ गेट में यहाँ पर झुला-झूल रहे है गेट जो है वो यहाँ पर लोहे का बना है।

और यहाँ आसमान नीला तथा सफ़ेद है बड़ा-सा--

तो यहाँ डेकोरेशन के लिए यहाँ पर अ ब्लू कलर की यहाँ त्रिपाल लगाई गई हैं।

एक लकड़ी का बॉक्स है और एक यहाँ पर हाथ दिख रहा है।

एक ने काले कलर की शर्ट पहनी है तथा अ एक ने नीले कलर की पहनी है।

जमीन की जो फर्श है वहां जीने बनी है जो गुलाबी और नीले है।

पेड़ पोधे यहाँ पर हरे दिख रहे है आदमी ने जो शर्ट पहनी वो लाल तथा बच्चे ने सफ़ेद --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

अ और यहाँ की जो लाइटें है वो सफ़ेद रंग की है जो जालियों का कलर है वो भूरे रंग का हैं।

जैसा की में यहाँ देख पा रही हू यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है जो कि सफ़ेद कलर के बोर्ड से लिखा हुआ है।

जैसा की में यहाँ देख पा रही हू यहाँ एक जिम क्लासेस है और जिम की बहोत सारी मशीन लगी हुई है।

जो की तीन बतख सफ़ अ सफ़ेद कलर के तथा एक भूरे रंग का है।

कार में अ शोरूम में यहाँ पर बाइक रखी हुई है सामने की दिवार पीली--

और यहाँ पर कुछ कुर्सियां और तथा मेज रखी हुई है जो की भूरे रंग की तथा काले रंग की है।

और यहाँ पर जो अलमारियां हैं वो सफ़ेद रंग की है।

सफदे और काहै रंग का तथा यहाँ पर जो इसमें छोटी - छोटी गिट्टियां पड़ी हुई है।